इतना बड़ा म्युजिक सिस्टम और ऊपर इतनी सारी लाईटे लगता हैं यह जरुर किसी शानदार इवेंट या दावत के लिए मगाया गया हैं|

यह तो किसी कॉफी शॉप का दृश्य प्रतीत होता है। यहाँ पर पीले रंग का एक खंबा है जिसके ऊपर छत और छत टिकी हुई है और छत के ऊपर ही एक हरे रंग का बोर्ड लिखा हुआ है।

और लगता है एक आदमी अपनी छोटी सी बेटी और अपनी पत्नी के साथ इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आया है।

इस तस्वीर में हम देख सकते है कि नीचे एक सुन्दर सा कारपेट है| फिर ऊपर एक स्टेज है| जिस पर एक आदमी और एक औरत खड़े हुये है और वो शायद किसी इवेंट मे या किसी फंक्शन में अपनी कोई स्पीच दे रहे--

हया शानदार दर्स्य है ढलतासा सूरज साफ़ पानी ओ एक बड़े से जाहज पर एक रोमांटिक सा कपल रोमांटिक से पोज सायद ये लोग ढलते सूरज नज़ारे के आनद उठा रहे हैं।

जो शायद यहां घूमने आया है और उसने अपनी यह तस्वीर उसी वक्त खिंचवाई है।

दोस्तों गर्मियो में ठंडे-ठंडे अंगूर खाने का मजा ही कुछ और है।

एक शानदार सा मंदिर रंग बिरंगी लाईटो से सजा हुआ और हर तरफ लोग ही लोग जो शायद इस मंदिर की सुन्दरता का नजारा देखने के लिए और मंदिर मे दर्शन करने के लिए आये हुए प्रतीत होते हैं।

लगता है सब अपनी फोटोज़ खिचवाने की होर में स्टेज पर ही आ गए है और हमें इसमें एक फोटोग्राफेर दिख रहा है जो सिद्दत से अपने काम में लगा हुवा है।

हम अगर पीछे अंदर देखें तो भी वहाँ पर बाइक ठीक करने जैसा कुछ समान रखा हुआ है।

यह तो किसी वेडिंग हाल के अंदर जाने का रास्ता लगता है जिसे सुंदर से फूलों से सजाया गया है और बाहर ही दो गार्ड्स हमें कुर्सियों पर बैठे हुए भी नजर आ रहे हैं।

और बाहर ही हमें एक आदमी दिख रहा है जो शायद अभी अपनी दाढ़ी बनवा कर बहार निकला है।

इस तस्वीर में हम देख सकते है सामने ही मार्शल आर्ट्स का एक बोर्ड लगा हुआ है मतलब यहां बच्चों को मार्शल आर्ट्स सिखाया जाता है और हमे यहां कई बच्चे उसके अभियस करते नजर आ रहे हैं। जिन --